इस इमेज में यहां पर कुछ बंदर दिखाई दे रहे हैं पास में पानी की टंकी भी रखी हुई है।

इस इमेज में यहां पर मेट्रो स्टेशन दिखाई दे रहा है और सीढ़ी पर कुछ लोग अह दिखाई दे रहे हैं।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

इस इमेज में यहां पर एक केला दिखाई दे रहा है और सामने सीढ़ी भी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर पानी का तालाब दिखाई दे रहा है सामने पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है और बीच में पानी का फाउंटेन भी अ दिख रहा है।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

इस इमेज में यहां पर कुछ ऑटो रिक्शा और बाइक दिखाई दे रहे हैं सामने एक इमारत भी नज़र आ रही हैं।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

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक इमारत दिखाई दे रही है और नीचे दुकान भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक होटल दिखाई दे रहा है और प्लेट्स में खाने पीने की चीजें रखी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर सोफा और लाइटें जलती नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर टेबल कुर्सी रखे हुए दिखाई दे रहे है और प्लेट्स खाने की नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने अ वर्ल्ड पार्क दिखाई नहीं रहा है और रोड भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है और कुछ मजदूर काम करते हुए नजर आ रहे है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बंगला दिखाई दे रहा है सामने गेट और सीढ़ी भी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक कार दिखाई दे रही है और पास में गमलों में पौधे भी लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक अह बाउंड्री दिखाई दे रही है किले की और ढेर सारे बड़े बड़े पत्थर भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक सड़क दिखाई दे रही है और एक आदमी साइकिल चलाता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में दिखेगा यहां पर बिल्डिंग दिखाई दे रही है और बड़ा सा गेट भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बांध दिखाई दे रहा है सामने एक लड़का खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है और नीचे फर्श पर सुंदर सी डिजाइन बनी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक हाल दिखाई दे रहा है ये टेबल के पास में एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।